नीचे टेबल रखी है और चेयर है। जहा पे बहुत सारे व्यक्ति बैठे--

यहा पे पानी भरा हुआ है। फिसेल पटी के पास घास है।

यहा एक पत्थरों की दीवाल उठी हुई है। इस दीवाल मे एक दरवाजा बना हुआ है। दरवाजे के सामने से सीडी बनाई गई हुई है।

और बहोत सारी लाइट है। अलमारी राखी हुई है।

जिंमेसे कुछ महिला है। और कुछ पुरुष है। पक्षी उड रहे है।

इमारत बनी है। जिसमे गुंबत बना हुआ है। चारों और वाहन रखे हुए है।

सामने एक मैदान है। मैदान मे दो डब्बे रखे हुए है। जो नीले कलर के है।

एक रोड बनी हुए है। रोड मे बहुत सारे बिल्डिंग है। नीचे की और सारी दुकाने है।